सजाना है और बहोत कलर का रंगीन रंगीन बैलून है।

यहा पर ख ए रोड वुम दिख रहा है रोड का ऊपर बहोत सारे आदमी खड़ा है और कुछ अनुष्ठान हो रहा है।

ओर बहुत से बहार म बाईक और स्कूटी देख रहा है और एक एयरटेल फोर जी पोस्टर भी हम देख रहा है।

ओर बाईक से दोनों आदमी बेठा है और पास में बहुत सा बहुत बड़ा एक मार्ग दिख रहा है और बहुत बड़ा एक नदी भी हम देख रहा है।

टाटा स्काई और पास में दोनों घर भी हम देख रहा है और एक आदमी --

और इसका कलर भी वाइट है और ओम का ओम दिख रहे है।

और इसको नीचे से बहुत बहुत छोटा-छोटा लड़का और लड़की खेला कर देख रहे है और बहुत सारे लोगों को हम देख रहे है।

यहा पर बोहोत सारे पेड़ हम देख रहा है और एक ब्रिज भी हम देख रहा है और बोहोत सारे --